आदमी यहाँ पे फोन पे बात कर रहा है कोई बैठ के दोस्ती से बात कर रहा है।

बहुत ही बड़ी देख सकते है पाइप देख रहे है ।

और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को --

और इसमें नंबर वैगरह दिया गया है।

हैलो गाइज देख सकते हैं ये मस्जिद मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को।

बहुत ही सीढ़ी वगेरा है इस साइड से उस साइड देख सकते हैं और बहुत ही मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा को |

बहुत ही प्यार सिन देख सकते हैं और कत्ते जगह दिखाई दे रहा है।

बैठे हुए है और एंजॉय ले रहा है देख सकते है बहुत ही --

मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को जबरदस्त सिन दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हैं |

और ये का क्लास है देख सकते है फिजिक्स का टीचर है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को --

और जबरदस्त सिन देख सकते है और --

ये एगो बिस्तर है और बहुत ही मस्त इसपे सजावटी किया हुआ है देख सकते है ।

ये आरिया कार्ड हैइसमे काफी सारे आदमी आए हुए हैं ।

यहाँ तक से वहां तक ही बड़े बच्चे सब

ठंड के दिन इस फील्ड में --

एग्जाम चल रहा है इसके कारण सब कोई आए हुए हैं ।

पेड़ लगे हुए है हरा-भरा देख सकते है।

आगे में जस्ट है देख सकते है और यहां का व्यू भी लगभग काफी मस्त --

लुक आप लोगो को काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा मस्त दिखाई दे रहा होगा देख सक --